कोई भी किसी भी टाइम पर आके--

शायद इन ये लोग कोई घर बना रहे है या फिर किसी प्रकार की कोई दीवार बन रही है।

ये आप लोगों के सामने एक मंदिर है।

और इसके साथ अह मिरर्स भी बहुत और फैंस भी लगे हुए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

ये रॉयल मार्ट की फोटो नजर आ रही है एक बिल्डिंग है ये--

और ग्रीनरी भी बहोत है।

ये किसी प्रकार का एक ऑफिस लग रहा है।

एक तो घर नजर आ रहा है और ये किसी प्रकार की शॉप नजर आ रही है।

बैटिंग कर रहा है बैटिंग वाले लड़के ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है और दूसरे ने व्हाइट कलर की पहनी है।

ये पिक्चर बहुत ही अच्छे गिटारस की लगी हुई है।

ये पिक्चर किसी स्कूल की लग रही है जहां पर टीचर्स भी खड़े हैं एक टीचर ने साड़ी डाली हुई है।

हरे-भरे ये वृक्ष लग रहे हैं।